--ओने कोर फेर सब पेड़ है यह बिजली के तारों लगल है।

ब्रिंच है बढ़िया धरे वाला बोर्ड है बोर्ड है लिखल है।

झंडा गाड़े वाला फूल है बहुत बढ़िया ब-बगीचा है पेड़ पौधा है।